और एक का आदमी ऑटो के पास खड़ा हुआ है।

एक काउंटर लगा है जिसमें कुछ बरनिया रखी है कोने में।

ये एक डे मिट्टी वाली जगह दिख रही है।

और यहां पर कुछ लाल कलर की चेयर रखी है बैठने वाली।

कुछ पेड़ेस के आस पास कुछ कूलर रखे हुए हैं।

और यहां कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे हैं और सामने पानी पीने के मटके रखे हुए हैं।

और यहाँ पर सामने एक एक्टिवा दिख रही है और ये सड़क पर रखा हुआ दिख रहा है के --

केयरिंग सौ रुपए का लिखा हुआ है कुछ बाइक खड़ी है कुछ लोग यहां शराब खरीदते हुए खड़े हुए हैं अंदर शराब की बोतले रखी हुई है।

और कुछ गाड़ियां यहां पर दिख रही है और ये बिल्डिंग में विंडो में कांच लगे हुए हैं।

और यहाँ पर कुछ पहाड़ी दिख रही है जिस पे खड़े हो सकते हैं आइड साइड बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं सामने एक पत्थर भी दिख रहा है यहाँ।

कुरकुरे वगैरा के पैकेट चिप्स के पैकेट और यहां रेड कुर्सिया लगी हुई है।

और ऊपर कुछ विंडो बनी हुई है जो कांच की बनी हुई है।

तीन बच्चा आगे की ओर बैठकर टी_वी देख रहे हैं।

और यहां ख़तम पार्टीशन भरा हुआ हैं।